और छोटे-बड़े टेबल भी है और वाइट एक छोटा वाइट बोर्ड है एक बड़ा वाइट बो --

और यहाँ पे लाइन भी लगा हुआ है अंदर में लोग जा रहे हैं।

एक मजदूर सब मजदूर खड़े हैं अपने-अपने कामो में व्यस्त हैं।

पैट्रोल पंप पे लिखा है इंडियन आयल ।

यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नाटक --

हॉस्पिटल का भी अभी उद्घाटन हुआ है बगल में कूछ पेड़ पौधे भी है।

कार लगा हुआ है स्कार्पिओ लगा हुआ है ये मॉल पूरी तरीके से सजा हुआ है।

यहाँ पे बहोत सुंदर यह दृश्य लग रहा है।

बैलून भी है इसके बगल में कलम और किताबे भी रखी हुई है दीपक सब जल रहे है फूलो की माला इन्हे पहनाई गयी है।

बहोत नए-नए कपडे हैं ये एक मॉल की तरह दिखने में लग रहा है।